कहा जाता है राजस्थान मे किलो का भरमोर है और राजस्थान के किले पर्यटन स्थल हैं जहाँ देश विदेश के लोग देखने और घूमने के लिए आते है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है नाहर गढ़ का किला नाहर गढ़ का किला यानि की चारो तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ किला है।

यह अजमेर का म्यूज़ीअम हैं जिसमे सरकार के अधीन है ये म्यूजियम और इसमे राजस्थान के पुराने राजपूतों का कही इतिहास यहां मौजूद है।

इस तस्वीर दिखाया गया हैं मेहरानगढ़ का एक सुंदर सा किला जिसमे काफी सारे छत्रियाँ बनी हुई हैं और --

दिखाई गए पिक्चर में एक वाटर पार्क की तस्वीर है वाटर पार्क में कई तरह तरह खेलने के खेलने के साधन है।

यहां तस्वीर राजस्थान के आमेर किले की है जो की चारो तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसके साथ में एक किला बना हुआ है पहाड़ी के नीचे।

दिखाई गई तस्वीर में एक राजस्थान का महल बना हुआ है यहाँ किसी राजस्थान के किले का एक भाग है।

और यहाँ राजस्थान का एक पर्यटन स्थल जहां दूर-दूर से लोग घुमने के लिए आते हैं।

यह एक बड़ा अपार्टमेंट है जिसमे तीन मंजिला मकान बने हुए है और उसके जस्ट सामने एक बगीचा बना हुआ है उसके पास मे --

डरावना किला हैं जिसे कहा जाता हैं माना जाता है ऐसा कि रात के समय मे इस किले मे नहीं आया जाता लेकिन दिन के समय ये किला उतना ही बेहद खूबसूरत हैं।

दिखाई गए पिक्चर मे एक तीन का मकान हैं जिसमे जोधपुर के पत्थरों से मकान बनाया गया है और ये मकान दिखने मे जितना सुंदर लग रहा है।

इस तस्वीर मे दिखाया गया हैं एक खंडर का रूप हैं जो पुराने जमाने की किलो हुआ करता था आज ये खंडर का रूप हैं जो की पहाड़ियो से ढका हुआ हैं।

इस पिक्चर में दिखाया गया जो किला है वो जैसलमेर का किला है और कहा जाता है की जैसलमेर का किला सोने का स्वर्ग किला होता है।

दिखाई गई तस्वीर एक शाही महल की है जिसका एक नजारा राजपुताने जैसा है राजपुत राजस्थान के राज पुतानो के महल भी इसी तरह बने हुये होते है।

जो की पहाड़े पूरी ढकी हुए हैं हरे हरे हरे हरे पेड़ पौधों से और यहाँ जो मार्ग हैं चित्तोडगढ़ के किले का मार्ग हैं।